और काफी फोस्टर बना हुआ है सीढ़ियां भी दिखाई दे रहे हैं।

लाइट भी लगे हुए हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

रेड कलर का टेबल भी दिखाई दे रहा है कुर्सी भी लगा हुआ है कुर्सी के बगल में डब्बा भी दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत सारे पेड़ का दृश्य दिखाई दे रहा है लोहा का स्टेज बना हुआ है पेड़ भी रखा हुआ है।

रूम में गाय बंधा हुआ है गाय ग्रीन कलर के खूंटी में बंधी हुई है।

एक आदमी सोया हुआ है एक आदमी दांत में देख रहा है जो लाइट जल रहा है।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

रूम भी दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे भगवान के फोटो भी दिखाई दे रहे हैं मशीन भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्कूल दिखाई दे रहा हैं जिसमे बहोत सारे खिड़कियां दिखाई दे रहे है।

बांसुरी बजा रहे हैं दीवाल पे कुछ पोस्टर लगा हुआ है लाइट भी दिखाई दे रहे हैं।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

हाथ से कुछ इशारा कर रहा है एक से पीछे से जा रहा--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

बगल में स्कूल दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर से ग्रीन कलर से पेंट किया गया है।